बिच में सफ़ेद कलर का वो बना हुआ है।

ये एक घर बनता हुआ दिख रहा है जहाँ पे बोहत सारे लोगन दिखत है।

पीछे कुछ बना हुआ है टेंट ल--

ये एक गार्डन दिखत है इसमें बोहत सारा झूला लगे हुए दिखत है लोहे के खम्भे दिखत है।

ये पत्थर पढ़े हुई दिख रहे है इटे दिख रही है रेत दिख रही--

बिजली जलती हुई दिख रही है चद्दर लगी हुई है ऊपर एक काले कलर की ऑटो खड़ी हुई है।